एंड मिरर में मुझे दो लड़के और दिखाई दे रहें हैं ।

इस पिक्चर में मुझे एक खेत दिखाई दे रहा हे।

झरने के पीछे मुझे अअ पत्थर दिखाई दे रहें हैं जो डार्क कलर ब्लैक कलर के शो हो रहें हैं।

और काफी सारी लाइटिंग्स इसमें मुझे दिखाई दे रही हैं ।

और पास में ही मुझे कुछ क पत्थरो का ढेर दिखाई दे रहा है।

हाँ ये पिक मुझे किसी मेले का दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे मिकी माउस भी दिख रहा है।

ऑटो का कलर ब्लैक है ।

जिसके पा बहार बहोत सारी बाइक्स पड़ी हुई है एंड तीन लोग कुछ इसमें लोग दिखाई दे रहे है ।

जिसके अंदर छोटी-छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई है एक झोपड़ी ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाई दे रही है ।

एंड मुझे इसमें एक थंबा दिखाई दे रहा है जिस पर लाइट लगी हुई है।

इस पिक्चर में मुझे एक बैंक दिखाई दे रहा है जिसमें डेकोरेशन किया हुआ है।

आस - पास में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं एंड इसमें अ--

इसमें ऑरेंज बैलून ग्रीन बैलून और वाइट बैलून से डेकोरेट किया गया है ।

जिसमें एक अंकल खड़े हुए है अंकल ने चोकरी शर्ट पहना हुआ है जिसका कलर वाइट है ।

इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मोबाइल से अपने फोन फोटो खींच रहा है ।

खेतो के पीछे मुझे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं जो ग्रीन कलर के हैं ।

बिल्डिंग के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है ।

अअ पिक्चर में नीचे का पर्स अ ब्राउन कलर का शो हो रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक मार्केट दिखाई दे रहा है ।